नीचे और ऊपर पुतलों ने कपड़े पहन रखे हैं जो डिस्प्ले पे लगाये गए हैं यहां पर कई सारे चीज़्े --

नदी के अंदर हम तीन न -- कश्तियों को भी देख --